और एक बगल में रेड कलर का फूल भी है।

पोस्टर भी लगाया हुआ है और लोहे का रेलिंग भी लगाया हुआ है।

दीवार को वाइट कलर से रेड कलर से पेंट किया गया है सीढ़ि भी दिखाई दे रहा है।

इस पर बिस्तर भी लगाया हुआ हैं और एक तकिया भी रखा हुआ हैं।

सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

पंखा भी रखा हुआ है और दोनों तरफ शटर लगाया हुआ है।

वह एक किल्निक है जिसमें कुर्सी और टेबल रखा हुआ है।

सामने बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है और बादल भी दिखाई दे रहा है।

मार्बल बिछाया गया है।

बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है और बहोत सारा झाड़ी भी है।

टेबल भी रखा हुआ है जो रेड कलर का है।

सामने ढलाई का काम चल रहा है और तीन आदमीन काम कर रहे हैं।

सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है और एक बांस का लकड़ी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में से धुआं भी निकल रहा है।

लोहे का पैम्प भी रखा हुआ है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रहा है।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

दीवार को व्हाइट कलर से और रेड कलर से पेंट किया गया है और लोहे का खंभा गाड़ा हुआ है।

एक आदमी खड़ा भी है।

यह एक रूम है जिसमें डेकोरेशन किया गया है।

जो अलग अलग ड्रेस पहने हुवे हैं और सभी के माथा पे टोपी लगाया हुआ है।

पीछे बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है और लोहे का जाली मारा हुआ है और बादल भी दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है रूम में बहुत सारा जिम करने वाला सामान रखा हुआ है।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

में बहुत सारा पंखा भी लगाया हुआ है और बल्ब भी जल रहा है।